ये एक स्टूडियो है जिसमें बाहर बोर्ड लगाया गया है जिसमें बोड में लिखा गया शर्मा स्टूडियो डिजिटल कलर --

और पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है।

खड़ा है पत्थर के ऊपर और दो जो लड़का है वो अंदर से एक लड़का हाथ दिखा रहा है।

यहां पे स्टेज को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है।

ये एक दुकान नजर आ रहा हैं।

यहां पे इलेक्ट्रॉनिक समान में रखा गया है।